और इसके ऊपर रेलिंग लगा है और कांच भी लगा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग है जिसपे परफेक्ट ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है इस--

ट्रक के दूसरे साइड बहोत सारे सिलेंडरस् रखे हुए हैं जो की गैस सिलेंडरस् का काम करते है।

यह एक वाटर पार्क है जहां घीसल पट्टी लगी हुई है जहां दो लड़के खड़े हुए हैं एक अपने मुंह में मास्क लगाया हु--

बहुत सारी गोली दवाइयां रखी हुई हैं जिसमें आप दवाई की शीशियां देख रहे हैं और नीचे एक टेबल रखा हुआ है जो कि बैठने के--

इसके दोनों साइड कुछ बटंस और डिस्प्ले डिस्प्ले --